मतलब भीड़ है य इस इस मतलब बहुत ही ज्यादा इस जगह पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है।

हिरण देखने को मिल रहा है छोटे से बड़े से बड़े सभी प्रकार के हिरण मौजूद है यह हिरन देखनेमें बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे है।

बैठे हुए है और एक महिला--

सब लोग एक तरफ से दूसरे तरफ जाते है और एक ट्रेन जो है वह सामने से जा रही है और ऊपर --

और बगल में ही कुछ पेड़ भी देख रहे है और यह बिल्डिंग सेल टैक्स बिल्डिंग है जो की बहुत पुराना बिल्डिंग हैं।

और आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक है और यह व्यक्ति एक स्पेशल बुक को दिखा रहा है जो की येवरीमेन हेयर के ऊपर लिखा गया है।